जहां दीवारों के साथ कर्टन्स लगे हैं और एक एल_इ_डी भी मुझे दीवार में दिखाई दे रही है।

यहां पे मुझे आसपास लोग भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं।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

सड़क भी दिखाई दे रही है। जहां पे कुछ लोग चल रहे हैं और एक--

यहां पे मुझे छोटे छोटे गमले नजर आ रहे हैं जिसमें बोहोत सारे फूलों को लगाया हुआ--

यहां पर मुझे बहोत सारे लोग अपने बच्चों के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं और--

खिड़कियां और दरवाजे मुझे दिखाई दे रहे हैं इसके आसपास मुझे हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियां भी नजर आ रही हैं और आसमान में मुझे बादल भी नजर आ रहा--

इस तस्वीर में मुझे एक गैराज नजर आ रहा है। जहां पे ब्लैक कलर और व्हाइट कलर की गाड़ी को ठीक किया जा रहा है।

चेयर्स के ऊपर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आस पास में रेड कलर के रंग से इसे सजाया गया है मुझे यहां पर बड़े सारे बड़े भी--

पेड़ पौधे और झाड़ियां नजर आ रही है और एक सोलर लाइट नजर आ रही है।